दुकान के ऊपर भारत स्टोर लिखा हुआ है।

दुकान में कपड़े दिख रहे हैं।

दुकान के साइड में बिजली कुत्ते दिख रहे हैं।

मुझे एक टेबल दिख रहा है।

बिल्डिंग के उस पार नील कलर का ड्रम दिख रहा है।

एक आदमी घर बना रहा है।

गेट के पीछे एक घेरा लगा हुआ है।

मेले में बहोत सारे आदमी हैं।

आदमी के भीड़ में एक बड़ा सा रथ--

रथ में आदमी बैठे हुए हैं।

आदमी की साइड में तीन रंग का छाता--

गेट के साइड में एक स्लिप चिपका हुआ है।

इन घेरा के उस पार पेड़ दिख रहे है।

घर के आगे सफेद रंग का बोरा रखा गया है।

रास्ता के आगे एक मैदान दिख रहा है।

बिल्डिंग के साइड के दीवाल में बोर्ड टंगा हुआ है।

बिल्डिंग के दरवाजे के ऊपर खिड़कियां हैं जिसमें डिजाइन है।

रेस्टोरेंट में लाइट अलग अलग देख रहे--

रेस्टोरेंट के आगे दो अचार के डब्बे दिख रहे हैं।

सैलून में एक बच्चा कुर्सी पर नील शर्ट लगाए बैठा हुआ है।

मुझे एक रख इसटेबल दिख रहा है।

हैंगर में एक कपड़ा टंगा हुआ है।

मुझे बेड दिख रहा है।

मंडप के आगे ढाक रखा गया है।

पुल के नीचे से आदमी जा रहे हैं।

मुझे एक नदी दिख रहा है।

रोड के साइड में हरे भरे थोड़े थोड़े जंगल दिख रहे है।

मुझे चार बिंडेल अल्बेस्टर के अल्बेस्टर दिख रहे हैं।

बेड़े के साथ में फूल गांछ दिख रहे हैं।

मैदान के साइड में एक खूंटी रस्सी बंधा हुआ दिख रहा है।

बाइक के आगे एक बिल्डिंग दिख रहा है।

स्टैंड के स्टैंड के पीछे एक बरगद का पेड़ दिख रहा है।

बरगद पेड़ के आगे लकड़ी दिख रहा है।

मैदान में एक आदमी खड़ा हुआ है।

एक गेट दिख रहा है।

दीवाल के पीछे एक घर दिख रहा है।

आदमी के पीछे टिफिन बॉक्स जैसा टिफिन बॉक्स का एक डिब्बा है।

मुझे नदी में नाव दिख रहा है।